एक बिल्डिंग के बरन्दा पर बहोत सारे कपड़ा सूखा हुआ है।

फेंसिंग के बाहर पतली सी सड़क भी बना हुआ है।

ऊपर में आसमान भी है।

बहोत सारे फूल के गमले भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक पतली सी सड़क दिखाई दे रहा है।

रिजॉर्ट का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है।

पीछे में स्ट्रीट लाइट्स भी बना हुआ है।

ऊपर में रस्सी में बहौत सारे राखी टंगा हुआ है।

बिल्डिंग में बहुत सारे गाड़ी भी पार्क किया हुआ है।

तालाब के किनारे बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे हैं।

पानी के ऊपर नाव भी तैर रहा है।

गेट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ए_टी_आई लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर बेबी एण्ड मे लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर हिंदी आसामी और इंग्लिश से गोहपुर लिखा हुआ है।

सेल्फ पर बहोत सारे शराब भी रखा हुआ है।

टेंट के नीचे बहोत सारे सोफा सेट भी रखा हुआ हैं।

नदी के बाहर बहोत सारे इंसान भी खड़ा रहा रहा है।

फ्लोर पर बहुत सारे ज़िम एक्वीपमेंट भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

स्टेचू का रंग सोना रंग से पेंट किया गया है।

के किनारे दीवार भी बना हुआ है।

लाइट पोल्स भी बना हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर एक कारपेट भी बिछा हुआ है।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

बिल्डिंग के ऊपर ए_आई लिखा हुआ है।

बिल्डिंग का दरवाजा और दीवार सीसा से बना हुआ है।

दरवाजे के बाहर डोर मैट्स भी बिछा हुआ है।

बहुत सारे जूते जो बाहर रखा हुआ है।

दरवाजे पर पुश लिखा हुआ है।

ब्रिज ऊपर इंसान भी दिख रही है।

ए इंसान के माथा पर गमछा भी पेना हुआ है।

रंग बिरंगे बहोत सारे स्लाइड्स भी है।